आगे की ओर पे छोटी छोटी मछलियाँ है सफेद और थोड़े कालेपन की जहाँ पर एक ट्रक दिखाई दे रहा है ऊपर --

चिड़ियाँ दिख रही हैं छोटी बड़ी चिड़ियाँ सभी दिखाई दे रही यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे और एक --

की आगे की ओर एक बगीचा है जहाँ पर पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और बाउंड्री में भी पौधे लगे हुए दिखाई--

मेला दिखाई दे रहा है जहाँ पर आगे की ओर एक ऑरेंज कलर में कुछ दिखाई दे रहा है साइड में कुछ मकान बने हुए दिखरे हैं कुछ हरियाली दिख रही है।